इस इमेज में हमको एच ऍफ़ ऐच.डी.ऍफ़.सी. बैंक का दिख रहा है पोस्टर और इधर बहुत सारे आदमी खड़े हुए दिख रहे है ये।

यहा हमें भीम राव अंबेडकर की फोटो दिख रही है पीछे और इधर गौतम बुद्ध की फोटो दिख रही है जय भारत जय भीम लिखा हुआ है जो की देखने में काफी खूबसूरत लग रहे है दो व्यक्ति उदले कलर के कपड़े पहने हुए है।

यह विजय पुस्तक भंडार शॉप है इस शॉप में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की नीले कलर की शर्ट पहने हुए है काले कलर का पेंट पहने हुए है।

इस इमेज मे हमको एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कटिंग करवा रहा है और दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति ने काले कलर के टी-शर्ट पहनी हुई है।

काले कलर का पैंट पहने हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है एक स्टूल रखा है ब्लैक कलर --